और रेत और गिट्टी रखी है कुछ लोग खड़े है कुछ पेड़ लगे है।

इस चित्र में बहूत बड़ी मुझे सड़क दिख रही है जिसमे बहूत सारी बसे लाइन से खड़ी हुई है।

पंखे लगे है कांच लगे है कांच के समाने कुर्सियाँ डली है और दो लोग खड़े हैं।

मुझे एक कच्ची रूट दिख रही है कच्ची रूट के सामने एक बड़ा सा मुख्य द्वार बना है इस मुख्य द्वार के ऊपर--

कॉलेज ऑफ़ एग्रीकल्चर रायगढ़ लिखा हुआ हैं।

झंडे लगे हुए है लाल कलर का झंडा नारंगी कलर का झंडा लगा हुआ हैं कुछ लोग गोल बना के बैठे है कुछ लोग कुर्सी पर बैठे हैं।

और चलक सीढियाँ लगी हुई है कुछ लोग नीचे की तरफ चलक सीढ़ियों से जा रहै है।

लिखा है और अ और डेयरी के दुकान के सामने एक कूलर है।

शंकर जी की प्रतिमा बनी हुई दिखाई दे रही है शंकर जी के गले में नाग है।

मुझे एक सड़क दिख रही है और एक बहुत बड़ी बिल्डिंग दिखाई दे रही है जिस बिल्डिंग मे गोलाकार में बहुत सारे दरवाजे--

इसमें मुझे एक दुकान दिखाई दे रही है जिसका नाम विनय बुक सेंटर स्टेशनरी है।